मेरे प्यारे परिवारजनों नमस्कार
मन की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है
ये एपिसोड ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुतबहुत बधाईयाँ
साथियो त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूँ
इस महीने की शुरुआत में गांधी जयन्ती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई
यहाँ कनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा
इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं
आपको एक और बात जानकार भी बहुत अच्छा लगेगा दस साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30 हजार करोड़ रुपये से भी कम की थी अब ये बढ़कर सवा लाख करोड़ रूपए के आसपास पहुँच रही है
खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गाँव तक में अलगअलग वर्गों तक पहुंचता है
इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर हस्तशिल्प के कारीगर हमारे किसान आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले कुटीर उद्योग सबको लाभ मिल रहा है और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है और धीरेधीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है
साथियो आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूँ और बहुत ही आग्रहपूर्वक दोहराना चाहता हूँ
जब भी आप पर्यटन पर जाएं तीर्थाटन पर जाएं तो वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरुर खरीदें
आप अपनी उस यात्रा के कुल बजट में स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरुर रखें
10 परसेंट हो 20 परसेंट हो जितना आपका बजट बैठता हो लोकल पर जरुर खर्च करिएगा और वहीँ पर खर्च कीजिएगा
साथियो हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत
इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिसमें मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोज़गार मिला हो रोज़मर्रा की जिन्दगी की कोई भी आवश्यकता हो हम लोकल ही लेंगे
लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा
वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए ही सीमित नहीं है और कहीं तो मैंने देखा है दीवाली का दीया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं वोकल फॉर लोकल नहीं जी वो तो शुरुआत है
हमें बहुत आगे बढना है जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में अब सब कुछ उपलब्ध है
ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ीपटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है
आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग हब बन रहा है
कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं
अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है और हाँ ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान उपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बनें जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी NamoApp पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मादे इन इंडिया स्मार्ट फोन से
मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूँगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले
साथियो जब आप भारत में बने भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दीवाली रौशन करेंगे अपने परिवार की हर छोटीमोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे तो दीवाली की जगमगाहट और ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी लेकिन उन कारीगरों की ज़िंदगी में एक नयी दीवाली आयेगी जीवन की एक सुबह आयेगी उनका जीवन शानदार बनेगा
भारत को आत्मनिर्भर बनाइए मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए जिससे आपके साथसाथ और भी करोड़ों देशवासियों की दीवाली शानदार बने जानदार बने रौशन बने दिलचस्प बने
मेरे प्यारे देशवासियो 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है
इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मजयंती मनाते हैं
हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं
सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका
हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टेच्यू ओएफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है
इस बार इसके अलावा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है
आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों देश के हर गाँव से हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया गया था
हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गईं
देश के कोनेकोने से एकत्रित की गयी ये माटी ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुँच रही हैं
यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा
यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी
31 अक्टूबर को ही देशभर में पिछले ढ़ाई साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा
आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया
अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई पहचान दी है
इस दौरान सामुदायिक सेवा की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिली है
साथियो मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूँ विशेषकर मेरे नौजवान बेटेबेटियों को जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज़्बा है सपने हैं संकल्प हैं
ये खुशखबरी देशवासियों के लिए तो है ही है मेरे नौजवान साथियो आपके लिए विशेष है
दो दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्मजयन्ती के दिन
इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत यानी मायभारत
मायभारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्रनिर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा
ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है
मेरा युवा भारत की वेबसाइट मायभारत भी शुरू होने वाली है
मैं युवाओं से आग्रह करूँगा बारबार आग्रह करूंगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान आप सभी मेरे देश के बेटेबेटी मायभारतGovइन पर रजिस्टर करें और विभिन्न कार्यक्रम के लिए सिग्न यूपी करें
31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी की पुण्यतिथि भी है
मैं उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
मेरे परिवारजनों हमारा साहित्य लिटरेचर एक भारतश्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के सबसे बेहतरीन माध्यमों में से एक है
मैं आपके साथ तमिलनाडु की गौरवशाली विरासत से जुड़े दो बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साझा करना चाहता हूँ
मुझे तमिल की प्रसिद्ध लेखिका बहन शिवशंकरी जी के बारे में जानने का अवसर मिला है
उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है नित इंडिया थ्राउघ लिटरेचर इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना
वे इस प्रोजेक्ट पर बीते 16 सालों से काम कर रही है
इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवाद किया है
उन्होंने कई बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इंफाल से जैसलमेर तक देशभर में यात्राएँ की ताकि अलग अलग राज्यों के लेखकों और कवियों के इंटरव्यू कर सकें
शिवशंकरी जी ने अलग अलग जगहों पर अपनी यात्रा की ट्रैवल कमेंटरी के साथ उन्हें पब्लिश किया है
यह तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है
इस प्रोजेक्ट में चार बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वोल्यूम भारत के अलगअलग हिस्से को समर्पित है
मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है
साथियो कन्याकुमारी के थिरु ए के पेरूमल जी का काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है
उन्होंने तमिलनाडु के ये जो स्टोरीटेलिंग ट्रेडिशन है उसको संरक्षित करने का सराहनीय काम किया है
वे अपने इस मिशन में पिछले 40 सालों से जुटे हैं
इसके लिए वे तमिलनाडु के अलगअलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं और फोल्क आर्ट फॉर्म्स को खोज कर उसे अपनी बुक का हिस्सा बनाते हैं
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अब तक ऐसी करीब 100 किताबें लिख डाली हैं
इसके अलावा पेरूमल जी का एक और भी पैशन है
तमिलनाडु के टेम्पल कल्चर के बारे में रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद है
उन्होंने लीथर पपेट्स पर भी काफी रिसर्च की है जिसका लाभ वहाँ के स्थानीय लोक कलाकारों को हो रहा है
शिवशंकरी जी और ए के पेरूमल जी के प्रयास हर किसी के लिए एक मिसाल हैं
भारत को अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वाले ऐसे हर प्रयास पर गर्व है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के साथ ही देश का नाम देश का मान सब कुछ बढ़ाये
मेरे परिवारजनों आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा
यह विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती से जुड़ा है
भगवान बिरसा मुंडा हम सब के ह्रदय में बसे हैं
सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अडिग रहना किसे कहते हैं ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं
उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया
उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहाँ अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी
वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले
भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना इस पर भी हमेशा जोर दिया
आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाईबहन प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित हैं
हम सब के लिए हमारे आदिवासी भाईबहनों का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है
साथियो कल यानि 30 अक्टूबर को गोविन्द गुरु जी की पुण्यतिथि भी है
हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविन्द गुरु जी का बहुत विशेष महत्व रहा है
गोविन्द गुरु जी को भी मैं अपनी श्रद्दांजलि अर्पित करता हूँ
नवंबर महीने में हम मानगढ़ नरसंहार की बरसी भी मनाते हैं
मैं उस नरसंहार में शहीद माँ भारती की सभी संतानों को नमन करता हूँ
साथियो भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है
इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था
इसी धरती से सिद्धोकान्हू ने समानता की आवाज उठाई
हमें गर्व है कि जिन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया
हम शहीद वीर नारायण सिंह को पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे
वीर रामजी गोंड हों वीर गुंडाधुर हों भीमा नायक हों उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है
अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी भाईबहनों में जो अलख जगाई उसे देश आज भी याद करता है
नॉर्थ ईस्ट में कियांग नोबांग और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से भी हमें काफी प्रेरणा मिलती है
आदिवासी समाज से ही देश को राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाएं मिलीं
देश इस समय आदिवासी समाज को प्रेरणा देने वाली रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मना रही हैं
मैं आशा करता हूँ कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे
देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा है
मेरे प्यारे देशवासियों त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है
पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पारा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है
इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है
मैं पारा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
सथियो मैं आपका ध्यान स्पेशियल ओलम्पिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूँ
इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था
ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है
इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने 75 गोल्ड मेडल्स सहित 200 पदक जीते
रोलर स्केटिंग हो बीच वॉलीबॉल हो फुटबॉल हो या टेनिस भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की झड़ी लगा दी
इन पदक विजेताओं की लाइफ जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है
हरियाणा के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है
बचपन से ही ऑटिज्म से जूझ रहे रणवीर के लिए कोई भी चुनौती गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई
उनकी माँ तो यहाँ तक कहती हैं कि परिवार में आज सब गोल्फर बन गए हैं
पुडुचेरी के 16 साल के टीविशाल ने चार मेडल जीते
गोवा की सिया सरोदे ने पावरलिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल्स सहित चार पदक अपने नाम किये
9 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने के बाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया
छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अनुराग प्रसाद ने पावरलिफ्टिंग में तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है
ऐसे ही प्रेरक गाथा झारखंड के इंदु प्रकाश की है जिन्होंने साइक्लिंग में दो मेडल जीते हैं
बहुत ही साधारण परिवार से आने के बावजूद इंदु ने गरीबी को कभी अपनी सफलता के सामने दीवार नहीं बनने दिया
मुझे विश्वास है कि इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मुकाबला कर रहे अन्य बच्चों और परिवारों को भी प्रेरित करेगी
मेरी आप सब से भी प्रार्थना है आपके गाँव में आपके गाँव के अगलबगल में ऐसे बच्चे जिन्होंने इस खेलकूद में हिस्सा लिया है या विजयी हुए हैं आप सपरिवार उनके साथ जाइए
उनको बधाई दीजिये
और कुछ पल उन बच्चों के साथ बिताइए
आपको एक नया ही अनुभव होगा
परमात्मा ने उनके अन्दर एक ऐसी शक्ति भरी है आपको भी उसके दर्शन का मौका मिलेगा
जरुर जाइएगा
मेरे परिवारजनों आप सभी ने गुजरात के तीर्थक्षेत्र अंबाजी मंदिर के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा
यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जहां देशविदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां अंबे के दर्शन के लिए पहुंचते हैं
यहां गब्बर पर्वत के रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं और आसनों की प्रतिमाएं दिखाई देंगी
क्या आप जानते हैं कि इन प्रतिमाओं की खास क्या बात है दरअसल ये स्क्रैप से बने स्कल्पचर हैं एक प्रकार से कबाड़ से बने हुए और जो बेहद अद्दभुत हैं
यानि ये प्रतिमाएं इस्तेमाल हो चुकी कबाड़ में फेक दी गयी पुरानी चीजों से बनाई गई हैं
अंबाजी शक्ति पीठ पर देवी मां के दर्शन के साथसाथ ये प्रतिमाएं भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई हैं
इस प्रयास की सफलता को देखकर मेरे मन में एक सुझाव भी आ रहा है
हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्ते से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं
तो मेरा गुजरात सरकार से आग्रह है कि वो एक प्रतियोगिता शुरू करे और ऐसे लोगों को आमंत्रित करे
ये प्रयास गब्बर पर्वत का आकर्षण बढ़ाने के साथ ही पूरे देश में वास्ते टो वेल्थ अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करेगा
साथियो जब भी स्वच्छ भारत और वास्ते टो वेल्थ की बात आती है तो हमें देश के कोनेकोने से अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं
असम के कामरूप मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना भरने का संस्कार का एक निरंतर काम कर रहा है
यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी हर हफ्ते प्लास्टिक वास्ते जमा करते हैं जिसका उपयोग ईसीओ फ्रेंडली ईटें और चाबी की चैन जैसे सामान बनाने में होता है
यहां स्टूडेंट्स को रिसाइक्लिंग और प्लास्टिक वास्ते से प्रोडक्ट्स बनाना भी सिखाया जाता है
कम आयु में ही पर्यावरण के प्रति ये जागरूकता इन बच्चों को देश का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी
मेरे परिवारजनों आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो
इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नो में दर्ज है
देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्मजयंती मना रहा है
वो देशभर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणाशक्ति रही हैं
अगर किसी की संगीत में रूचि हो तो वो संगीत के प्रति समर्पण का बड़ा उदाहरण ही है अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो तो भक्तिरस में डूबे मीराबाई के भजन उसे अलग ही आनंद देते हैं अगर कोई दैवीय शक्ति में विश्वास रखता हो तो मीराबाई का श्रीकृष्ण में लीन हो जाना उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है
मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी
वो कहती भी थी
गुरु मिलिया रैदास दीन्ही ज्ञान की गुटकी
देश की माताओंबहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणापुंज हैं
उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज़ को ही सुना और रुढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई
एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती हैं
वे भारतीय समाज और संस्कृति को तब सशक्त करने के लिए आगे आईं जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था
सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है ये हमें मीराबाई के जीवनकाल से पता चलता है
मैं संत मीराबाई को नमन करता हूं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
आप सबके साथ होने वाला हर संवाद मुझे नई ऊर्जा से भर देता है
आपके संदेशों में उम्मीद और पॉजिटिविटी से जुड़ी सैकड़ों गाथाएं मुझ तक पहुंचती रहती हैं
मेरा फिर से आपसे आग्रह है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल दें
स्थानीय उत्पाद खरीदें लोकल के लिए वोकल बनें
जैसे आप अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अपने मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखें और आपको पता है 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती देश एकता के दिवस के रूप में मनाती है देश के अनेक स्थानों पर रुन फोर यूनिटी के कार्यक्रम होते है आप भी 31 अक्टूबर को रुन फोर यूनिटी के कार्यक्रम को आयोजित करें
बहुत बड़ी मात्रा में आप भी जुडें एकता के संकल्प को मजबूत करें
एक बार फिर मैं आने वाले त्योहारों के लिए अनेकअनेक शुभकामनाएं देता हूँ
आप सभी परिवार समेत खुशियां मनाएं स्वस्थ रहें आनंद में रहें यही मेरी कामना है
और हाँ दिवाली के समय कहीं ऐसी गलती न हो जाये कि कहीं आग की कोई घटनाएं हो जाए
किसी के जीवन को खतरा हो जाए तो आप जरुर संभालिये खुद को भी संभालिये और पूरे क्षेत्र को भी संभालिये
बहुत बहुत शुभकामनाएं
बहुतबहुत धन्यवाद